एक कार्पेट बिछा हुआ है जो हरे कलर है उस कार्पेट में काफी सारे लोग बैठे हुई है जो चप्पल उतार के है जो लेडीज है जो सारी पहनि हुई है।

बगल में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो हाथ में फोन रखे हुए है साल्ट पहने हुए है और पैंट उ ब्लैक कलर का जु जूता ब्लैक पीछे साइड बहुत बड़ा एक मकान है मकान सफेद कलर का पैंट हुआ है और नीचे साइड नीले कलर का और यहां पे एक बीच में एक मंदिर टाइप का उसमे एक झंडा लगा।

सारे लोग सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो साल्ट है और काफी स पन्त पहेने हुए हे लाल कलर के भी पहने हे सामने साइड एक बहुत बड़ा मिकी माउस है।

अगल बगल दिवाल है। दिवाल लोहे केे है। और ऊपर साइड टिन -ए का एक स-घर हे। नीचे काफि शारा सामान राखि हूइ हे।

बहुत सारे आकाश झूले है जिसमे काफी रंग बिरंगी बॉक्स लगी हुई है नीचे साइड एक लोहे की जंजीर लगी हुई है जो किनारे से अंडर जाने के लिए रोकता है।

एक इंसान हैजो कपड़ा पहना हुआ है उसके बाद टोपी भी पहना हुआ हैचड्डा हैअगल बगल टीने लगे हुए हैंजो लोहे की और--